हल्का काला रंग दिखाई दे रहा है मुर्गा मुर्गी सफेद दिखाई दे रहे है ।

डलती हुई दिखाई दे रही छत पर बहुत सारे तार बिछे हुए दिखाई दे रहे है तार अ-अ तार उनही से बंधे हुए दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है वो नदी के किनारे पर लाल मिट्टी दिखाई दे रही है बहुत सारे किनारे पर पेड़ पौधे भी देखाई दे रहे है और ये आसमान सफेद दिखाई दे रहा है नदी--

ये नाव में नावँ लड़कियाँ और एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है लड़कियाँ भी नाव चलाती हुई दिखाई दे रही है लाल कलर की जैकेट पहने हुए दिखाई दे रही है और सफ़ेद कपड़े पहन रही है।